पीछे बहोत सारा घर भी दिखाई दे रहा है।

यहां एक बहुत बड़ा घर दिख रहा है।

यहां एक तार भी दिखाई दे रहा है।

यह बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

और इस घर के सामने पेड़ की डालियां भी दिखाई दे रही है।

जिसमें दो लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सोफे के नीचे का फर्श सफेद टाइल्स से बना हुआ है।

यहां चेयर में बैठे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

और ए_टी_एम का सामने एक काला कलर की गेट भी दिखाई दे रही है।

यहां बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

और ऊपर आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं।

के भीतर बहुत सारी कुर्सियों को दिखाया गया है।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

जिसमें बहोत सारे लोग मार्केट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ एक बहुत बड़ी दीबार भी दिखाई दे रही है।

यह एक नर्सरी है।

जिसमें बहुत सारे छोटे-छोटे पौधों को रखा गया है।

जिसके ऊपर एक बैग रखा हुआ है।

ऊपर लाइटे भी दिखाई दे रही है।

यहां तीन रथ को दिखाया गया है।

इसमें बीच वाले रथ में बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां भारत का मानचित्र भी दिखाया गया है।

यहाँ पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है।

एक मालगाड़ी भी दिखाई दे रही--

जिसमे बहुत छोटे-छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

दो कस्टमर दिखाई दे रहे हैं।